आसमान बहोत अच्छे से दिख रहा है सामने से एक बड़ा पेड़ भी दिख रहा है।

अ क्रिश्चियन जो धर्म है उसकी पूजा करने के लिए आए हैं।

पीछे से भी एक लड़की जो जाम्प कर रही है पीछे से और एक लड़का वो भी जाम्प कर रहा --

और ना एक जन कागज कट रहा है एक जन छबि --

ये एक डाक घर का छबि है जहाँ जिसका नाम है --

अ दिख रहा है एक घर भी दिख रहा है जिसका गेट बंद है।

ये एक पा माठ का छवि दिख रहा है जहाँ सामने से बहोत सारा लोग --

छतरी ले के बैठा हुआ है छाँव पे व माठ के ऊपर बहोत सारा लड़का खड़ा हुआ है।

दूर-दूर तक और भी प-पहाड़ और और भी पेड़ दिख रहा है।

अ लाइट भी है और ब-बेंच भी है जो वहाँ पर लोग बैठते हैं।